ये गाँव घर में बसों से बनाया जाता है ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में।

जिस पे इस सीढ़ी बनी हुई है। इस सीढ़ी के द्वारा हम आराम से पहाड़ के उपर चढ़ सकते है।

ये एक एक बोहोत ही खूबसूरत द्रश्य लग रहा है देखने मे।

यह एक भगवान का रथ दिख रहा है जहाँ कुछ लोग रथ के आगे खड़े हैं।

जहां पे कुछ लोग दिख रहे हैं और दो लोग खाना खाते हुए दिख रहे हैं।